ये मेला है जहां पे तीन झूले लगे हुए हैं बड़े-बड़े टिकट काउंटर है नीचे लोग बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत सारी शॉपिंग की दुकाने है।

ये एक बहोत बड़ा प्लॉट है जहां पर रेड और--

पे बच्चों के बहोत सारे वैराइटीज में कपड़े रखे हुए है टॉवल्स रखे हुए है ट्रैक पैंट रखी हुई है।

ये श्री पंचायती धर्मशाला है जिसके ऊपर गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्ति लगी हुई डोर पे बहहोत अच्छा काम किया हुआ है ऊपर तीन खिड़कियां है।